हाय पे एक पर्सन बेथ हुआ हे जिसने ब्लू कलर का सर्ट पहन रखा हे यलो कलर का रुमाल दल के रखा हे गले ए कुछ घास दिखरि है।

कुछ बड़े पर दिख रहे हे कुछ हरे कलर दिख रहे हे बिल्डिंग दिख रहा हे बिल्डिंग वाट कलर का दिख रहा हे काफी सारी विंडो दिख रहाई हे कुछ आसमान दिख रहा हे वाट कलर --

खड़ा हुआ दिख रहा है उसके गले में एक रुमाल है और एक पर्सन जाता हुआ दिख रहा है|

कुछ ग्रीन कलर का दिख रहा है एक पर्सन बैठा हुआ दिख रहा है उसने कैप पहन कर रखा है टोपा पहन के रखा है एक पर्सन ने कम्बल ओढ़ कर बैठा है और यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ दिख रहा है और एक पेड़ दिख रहा है जो हरे--

आसमान ब्लू कलर का दिख रहा है कुछ घास दिख रही है निचे घास हरे कलर की दिख रही है कुछ मिट्टी दिख रही है और यह पे कुछ दरवाजे दिख रहे है बिल्डिंग के अंदर--

व्हाइट कलर की किसी ने ऑरेंज कलर की और यहां पर पानी जो है नीले कलर का दिख रहा है हरे कलर का दिख रहा और आस-पास मे काफी सारी घासे दिख रही है कुछ पेड़ दिख रहे है पेड़ हरे कलर के दिख रहे है आसमन व्हाइट कलर ।